जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर बहुत सारी बॉले पड़ी हुई हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

जैसे की मैं देख सकता हूं यहां पर एक फैन हैं।

जैसे कि मैं देख सकते हैं यहाँ पर एक फैन है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यह एक बड़ा मकान है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहन पर एक पुराना बक्सा रखा हुआ है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर कांच लगे हुए हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर कुछ बिल्डिंग हैं।

जैसे कि मैं देख सकता वहां पर कुछ घांस हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहां पर कुछ घास के पेड़ हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर कुछ पेड़ हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं वहां पर एक गेट है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर कुछ कार खड़ी हुई हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पर एक टीन सेट है।

जैसे की मैं देख सकता हूं यहां पर एक कार खड़ी हुई है।

जैसे की मैं देख सकता हूं यहां पर बहुत सारी लाइटें लगी हुईं हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पर एक स्विमिंग पूल है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं इसमें बहुत सारे खाने के सामान हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर कुछ बिल्डिंग हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं।